यह एक टोल नाके के का चित्र लग रहा है रात का समय है टोल नाके की सारी लाइटें चालू है और कुछ कार --

लैपटॉप रखा हुआ दिख रहा है लैपटॉप की साइड में कुछ चीट्स भी रखी हुई है।